ब्लू कलर का है स्टेरिंग है सब अच्छा खासा इस कंडीशन में है गाड़ी आप इसे चला सकते हैं खेत जोत जोत सकते हैं।

शंकर भगवान का शिवलिंग है जो की सावन में सब लोग जल ढारने जाते हैं। बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं और वो बहुत अच्छे मंदिर है जो की लगभग --